यहाँ पर एक अस्पताल है यहाँ पर कूड़ेदान धरे हुए हैं एक लाल है पीला है।

यहाँ पे एक टंकी भी लगी हुई है।